यह एक घर का दृश्य दिखाया गया है जिसमें वॉल पे बहुत अच्छी डिजाइंस है।

और एक आदमी बस से उतरा है एक बस में चढ़ने को रेडी है।

मंदिर के इसमें ऊपर आ एक टिन शेड लगाई है जोकि छाया दे रही है बहोत ही अच्छी।

ये नंबर है यू_पी सिक्स फाइव बी_बी सेवन थ्री नाइन थ्री ।

चादर ओढ़ के सो रहे हैं टेबल फैन भी लगा हुआ है नॉर्मल फैन भी --

उस गार्डन में पानी दे रहा है जो इन्होंने मेहनत से लगाया है।

जो इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है नॉर्मल स्कूटी --

पार्लर है फास्ट फूड कॉर्नर है और आइसक्रीम पार्लर है।

जिसमें एक दम सफेद झरना आपको निकलते हुए दिख रहा है जैसे की दूध की नदियां बह रही --

बहोत ही बड़ी सारी बिल्डिंग है जोकि बड़े एरिया में फैली हुई है।

ये है रानी जी की बावरी यहां पर प्रवेश शुल्क शुल्क लिखा है।